यह एक रिसेप्शन का दृश्य है और दो आदमी वहां पे खड़े हैं एक आदमी रिसेप्शन के अंदर है।

दरवाजा है और काउंटर पर लिखा हुआ है में आई हेल्प यू ।

बहोत सारे पेड़ हैं सामने में बीच में झंडा लगाया हुआ है।

पीछे में पीला कलर का पेंट किया हुआ है और ऊपर में दो पंखे हैं।

कलर का चेयर भी है अंदर में इंग्लिश टॉयलेट भी है।

इसमें बहुत सारे पेन के पैकेट रखे हुए हैं।

जिसमें आसमानी कलर का लउरेक्स पेन है और ब्लैक कलर का मेट्रोमैक्स का है।

यह बहुत ही सुंदर व्यू है जिसमें बहुत सारे घर हैं।

इसमें बहोत सारे लोग हैं और एक टीचर है एक आदमी भी खड़ा--

दरवाजा है साइड में बहुत सारे गेट बनाके रखे हुए हैं।

पीछे घर का कलर ब्लू है।

पीछे दीवाल खड़ा है जो है वाइट कलर का और एक खंभा पे बॉल लटका हुआ है।

आगे में एक कार है एक मोटरसाइकल है एक साइकल है।

यह एक घर का दृश्य है जो है घर करकट का है।

और उधर साइड में बहुत सारे लकड़ी रखे हुए हैं।

पीछे में बहुत सारे पेड़ हैं साइड में एक व्हाइट कलर का घर है।

एक आदमी बाइक से जा रहे हैं जो बाइक ग्लैमर है।

एक खिड़की है जो मिट्टी कलर का है।

ये घर बनने के लिए नींव खानाया है उस टाइम का दृश्य है।